यह एक कमरा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुई हैं सामने टी.वी. लगी हुई है दो पंखे चल रहे हैं।

स्कूटी का रंग नीला काला सफ़ेद है।

यह दृश्य बहोत ही सुंदर लग रहा है।

यह एक नर्सरी है यहाँ बहुत सारे पौधे गमलो मे लगाकर बेचे जाते है।

असमान भी दिखाई दे रहा है।

एक मस्जिद का ऊपरी मंजिला है यह सफेद रंग का है।

यह देखने में अतियंत सुन्दर है इसका नाम रोशन इंटरप्राइजेज है।